दिखाई दे रहा ऊपर आसमान बादल दिखाई दे रहे। यहाँ पर जालियो के अंदर छोटे-छोटे गमले दिखाई दे रहे।

सामने एक बेड दिखाई दे रहा है जिस पे दो कम्बल रखे हुए हैं सफ़ेद कलर के तकिये रखे हुए हैं। यहाँ पर एक कुर्सी पर दो बेग रखे हुए हैं।

और यहाँ पर दो पानी की बोतल रखी हुई है एक थर्मस रखा हुआ है।

सामने स्टेचू दिखाई दे रहे हैं जिनके हाथ में सभी रंग बिरंग के जिनके हाथ में एक के हाथ मैं गिटार ढोलक क और--